देख के जैसे की लग रहा है उस ब्रिज के ऊपर जो है एक आदमी खड़ा हुआ है और सामने जो है दूर में यानी की बहोत सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए है नज़ारे जो है देखने मे बहोत ही सुंदर लग रहा है।

दो बस यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो की खड़ा हुआ है| अंदर लाइट भी जल रही है और यह जो वेटिंग रूम यानी की बस स्टैंड का वेटिंग रूम का पिक्चर दिखाई दे रहा है।

यह जो पिक्चर है यह एक मछली के मार्किट का पिक्चर दिखाया जा रहा है जहां पे एक आदमी जो है चेयर के ऊपर बैठा हुआ है।

और यहाँ जैसा की एक नीला कलर का प्लास्टिक बिछाया गया है उसके ऊपर बहुत सारी मछलियाँ रखे गए है तरह तरह के और यहाँ पर एक पोस्टर भी लगया गया है और एक नीले कलर का ड्रम भी दिखाई दे रहा है।

और सामने जो है एक आदमी खड़ा हुआ है पीछे एक औरत एक बच्चे को ले कर खड़ा हुआ है और बहुत ही सुन्दर नज़ारा लग रहा है| असमान वाइट कलर --

इसमें जो है वाइट और ग्रीन कलर का डिज़ाइन बना हुआ है पिअर भी बने हुए हैं साइड में जैसा की वो डिज़ाइन दिखा रहा है पिलर और पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

और यहां पर जैसे कि कुछ लोग सब्जी को सेल कर रहे हैं और कुछ लोग खरीद रहे हैं| यहाँ का यहाँ पे एक छोटा-सा अ-अ स्टेज जैसा भी बना हुआ है| एक बाजार का फोटो है।

सामने दो बाइक एक स्कूटी भी रखा हुआ है एक ए.सी. का मशीन भी दिखाई दे रहा है बाहर।

पिक्चर है एक हॉल का अंदर का पिक्चर है जोकि बहुत ही कलरफुल लग रहा है| सामने जो है एक स्टेज यानी की हॉल में बना हुआ है।